जिस में बहुत सारा सा बहुत खूबसूरत सा गुलाब की फूल खिला हुआ है गुलाब का।

जिसमें ए.सी. बिल्डिंग में ए.सी. भी लगा हुआ है।

एक तरफ एम.जी.एम.आई.टी. लिखा हुआ है।

सामने एक दरी बिछी हुई है।

ये एक शॉप है।

और कुछ पेंसिल बॉक्सेस है और कलर फुलस है।

बहोत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रही हैं।

कुछ लेटे हुए हैं।

सामने कुछ सामान दिखाई दे रहे हैं।

और स्कूल का नाम है अरारिया पब्लिक स्कूल ।